अंदर बहुत सारे आदमी चेयर पर बैठा हुआ और खड़ा है।

पिंजड़े के अंदर बहुत सारे चिड़िया रखा हुआ है।

और सी_सी_टी_वी कैमरा भी लगाया हुआ है।

निचे में पेड़ पौधा और घास भी दिख रहा है।

रास्ता के किनारे में बहुत सारा फुल पॉट और कोकोनट का घास भी दिखाई दे रहा है।

दीवार का रंग सफेद और लाल है।

पीछे में हरे रंग का तीला लगाया हुआ घर भी दिख रहा है।

सफेद रंग का चार लाइट बल्ब भी लटकाया हुआ है।

दीवार पर सफेद रंग का स्विच बॉक्स भी लगाया हुआ है।

टेबल के नीचे पंप और बकेट भी है।

ये फोटो में मुझे एक कमरा दिखाई दे रहा है।

पीछे में एक आदमी भी बैठा हुआ है।

दरवाजे का रंग सफेद और शिशा से बनाया हुआ है।

और एक चेयर भी रखा हुआ है दीवार पर सफेद रंग का--

लाइट बल्ब स्विच बॉक्स भी रखा हुआ है।

बहुत सारा लाइट्स और फ्लावर पोट भी लटकाया है।

बिल्डिंग के बाहर बहुत सारा गाड़ी बस दिख रहा है।